इस तस्वीर में बहुत बड़ा मैदान देख रहा है यहां पे बहुत सारे लोग कोने कोने पे बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में सुनसान रोड का नजारा दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक बोहोत ही बड़ा खंडहर दिख रहा है। यह खंडहर टूटा हुआ है।

यहां पे बहोत बड़ा सा गार्डन बना हुआ है।

आगे स्लैब पर बहुत सारी चाय की केतली रखी हुई है और कांच की है नीचे की तरफ प्लेट रखे हुए हैं।

फलों से थोड़ी दूर एक आदमी है जिसने बैग ले रखा है ब्लैक कलर का।

किनारे-किनारे बोहोत सारे पेड़ पो पेड़ लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में स्कूल के बाहर का नजारा दिखाया गया है।

इस तस्वीर में दो नदी दिख रही है एक आगे की तरफ गई है एक सामने की तरफ से आई है।

इसके ऊपर दो आदमी खड़े हैं ऊपर आसमान दिख रहा है किनारे किनारे सीढ़ी बनी हुई है।

दीवाल गुलाबी कलर की है ऊपर से धूप आ रही है।

इस तस्वीर में पानी वाली मशीन का दृश्य दिखाया गया है।

आगे की तरफ बहुत सारी प्लास्टिक की कुर्सी रखी है।

इस तस्वीर में बाल काटने की दुकान दिख रही है।